और खिड़कियां भी दिखाई दे रही है पंखा भी टंगा हुआ है मकान में बिजली भी आने को प्रकार कौन ज्यादा दे रही हैं सामने और लाल कलर का भी दिखाई दे रहा है।